इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे होटल गेटवे कर्नाटका दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ मशीने दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक केबिन दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक कार दिखाई दे रही हैं।

इर में मुझे कार का बोनट दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे बहोत सारी कार दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।